इसमें वाइट कलर का फर्नीचर बना है जिसके ऊपर एक--

जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हैं वहां--

यहां एक गार्डन है गार्डन में--

रेड एंड ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है।

है जिसमें ब्राउन कलर पुता हुआ है जिसमें ब्लैक --

और पिंक कलर की आउटसाइड रेलिंग फोन भी लगी हुई है।

कलर के छोटे बड़े डिजाइनर बहुत सुंदर फैशन दिख--